शटर है जो अभी बंद है पास ही में एक हुआ है ये बंद है अभी।

इस चित्र में एक काफी मात्रा में भीड़ है एक ज्योति जल रही है जो आग की लपटों से काफी--

उसके सामने रेस्टोरेंट के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है जो व्हाइट कलर की है आस पास कुछ मोटरसाइकिल है रेस्टोरेंट के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।